यह एक डांस अकैडमी है ।

हटिया का फोटो है और हटिये में हर तरह के सामान मीलते है में बहुत सारे लोग जाते है सामान खरीदने के लिए |

दुर्गा माँ की मंदिर है जहां पे हिंदू धर्मं के लोग जाते है पूजा करने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे हिंदू धर्मं के लोग जाते हैं ।